दुकान एक आगे दो आदमी बैठे हुए है ऊपर की साईड बोर्ड लगा हुवा है।

नीचे साईड चद्दर बिछी हुयी हैं कोलम लगे हुए हैं पिलर लगे हुए हैं पोस्टर लगे हुए हैं।

वगल में एक कांच दिख रहे है गाड़ी का और पैशन प्रो गाड़ी --

एक आदमी कटिंग कर रहा है नीचे कैंची छे।